दुकाने नजर आ रही है जिसके ऊपर रहमातुल्ला इंटरप्राइसेस लिखा हुआ है।

एक राहगीर ने शर्ट पेहनी हुई है जिसने अपने माथे में तिलक लगाया हुआ है।

चश्मा लगाए हुए है और वो बच्चों के काम को देख रही है।

गार्डन नजर आ रहा है जिसके अंदर चौकीदार का घर बना हुआ है।

उस दुकान के अंदर एक ई-रिक्शा खड़ी हुई है जो हल्की नीले कलर की है।